यहां पर हम एक महिला को भी देख सकते हैं जो कि यहां से बाहर निकल रही--

इस तस्वीर में हम देख सकते हैं कि यहां एक ज्वेलर की दुकान दिखाई गई है।

बहोत बड़ी कपड़ों की दुकान दिखाई गई है।

यह एक बहोत ही शानदार बड़ी और सुंदर दुकान है।

इसका मतलब यहां पर शिमला में बना हुआ--

साथ में कार्य के लिए आए हुए हैं।

इस तस्वीर में हमें एक बिल्डिंग दिखाई गई है।

यहां पर हम कुछ व्यक्तियों को खड़े होकर बातें करते हुए देख सकते हैं और यहां एक जूतो का पोस्टर भी लगा है।

जिसमें अभी लेंटर का कार्य चल रहा है।

और यह ढाबा वेज और नॉन वेज दोनो देता है।

इस तस्वीर में हमें एक होटल का कमरा दिखाया गया है।

इसे ओवर हेड ब्रिज भी कहा जाता है।

इस तस्वीर में हमें एक इमारत दिखाई गई है जो कि हम--

यहां पर हम एक अलग से खड़ी हुई वाइट गाड़ी भी देख सकते है।

जिस पर लिखा है सर्विस ।

भवन की छत हरे रंग की है।

की यहां पे बहोत ज्यादा हरियाली छाई हुई है।